सामने दीवारों पर कुछ कपड़े के कवर लगा रखे हैं और पास ही में कुछ टेबल लगा रखी है फर्श पर --

इस फोटो में ब्लैक कलर की सड़क दिखाई दे रही है सड़क सड़क के पीछे बैक ग्राउंड में कुछ टेम्पू --

जिसके अंदर कुछ किताबें और कुछ नोट्स बुक दिखाई दे रही हैं।

व्हाइट और रेड कलर की कुछ टी शर्ट पहनी है कुछ आदमियों ने और उसके पीछे बेग्राउंड में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

तीन स्कूटी का कलर लाल है और दो स्कूटी का कलर ब्लैक एंड भूरा हैं।

उसके पीछे कुछ मंदिर और कुछ मूर्तियों जैसा लग रहा है।

जिसमें एक टेबल पर एक आदमी बैठा है यह नीले कलर की टेबल लग रही है।

हरे कलर की फरस पर कुछ घास उगी हुई है और कुछ बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।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

इस फोटो में फर्श दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड में एक सफेद कपड़े पहने हुए आदमी और एक--